चार बॉस के डंडे सहायता के लिए वहाँ खड़े हैं।

इस छाया चित्र में चार बसें एक पंक्ति में खडी है। यह छाया चित्र किसी बस स्टेंड का है।

इस तस्वीर में कुछ दो पहिया वाहन खड़े हैं कुछ व्यक्ति खड़े हैं कुछ महिलाये खड़ी हैं ।

इस छाया शेत्र में इंग्लिश मे विगन बुक सेंटर स्टेशनरी लिखा हुआ है यहा चार व्यक्ति दुकान के बाहर खड़े है।

महिला डांस कर रही है। महिला के पीछे एक पोस्टर है।

यह तस्वीर बाहर की है | इस तस्वीर में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।